जहां पे नीचे की ओर ईट का टाइल्स लगा हुआ है।

जो योगा करते हुए नजर आ रहे हैं।

पीछे एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

यह एक पेट्रोल पंप की फोटो बनी हुई है जहां पे एक बाइक नजर आ रहा है और तीन आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

दो टेबल बना हुआ है जो लकड़ी की मदद से बनी हुई है जिसका कलर पिंक है।

पे एक लोहे के खंभा भी नजर आ रहा है।

इसका कलर ब्राउन है नीचे की ओर टाइल्स लगी हुई है।